और नीला मस्त दिख रहा महंगा होगा।

मस्त पहनाये है लड़की मन का कपडा--

प्रबोध परीक्षाबोध यहाँ पर पेपर समय में कुंजी गाइड और अनेक प्रकार के मिलते है और यहाँ पर --

बोतल रखे है माजा कोका कोला --